यहा पे एक पूल है पूल के नीचे से रेल्वे आ का पटरी गुजर रहा है पटरी पे एक लाल कलर की ट्रेन है।

इसमें बहुत सारे बच्चे एक बच्चे चार के ग्रुप मे और एक बच्चे साइकल पे हैं बेग टाँगे हुए हैं यहा पर स्कूल है बहुत सारे पेड़ पोधे हैं।

यहा पे तीन चार बूलोड़ो है एक एक स्कार्पियो एक बूलोड़ो एक लग रहा है फोरचूनर इस के पीछे पीछे एक डिस्कवर बाइक एक स्कूटी है।

यहां पे एक गाड़ी है उस गाड़ी पे मार्बल लोड है उस मार्बल पे दो आदमी हुए हैं और दो आदमी अलग साइड में ठड़ा है उसमें से एक आदमी फोन चला रहे हैं।